मिटटी और सीमेंट भी रखा हुआ है और इनके इइक्विपमेंट्स भी मिस्त्री के यहाँ रखे है।

जिसमे एंट्री गेट पे लगा हुआ है जो फिलहाल बंद है। बाहर से रिबन भी चारों तरफ लगा हुआ है।

जैसा कि आप देख रहे हे यहा पर हमे एक बोहुत बड़ा हरा-भरा घास का मैदान दिखाय दे रहा हे जिसमे काफी पेड़ पौधे हैं।

जैसे की आप देख रहे हैं इस तस्वीर मे हमे एक पुल दिखाई दे रहा है जाता हुआ जो पानी के ऊपर बना हुआ है यहाँ पर हमे नीचे काफी सारा बोहत सारा पानी दिखाई दे रहा है ।

काफी बड़ी ये नदी है जिस पर ये पूल बना हुआ हैं और ऊपर से इसके काफी सारे यात्री जाते है।